और एक रथ भी है उसके बगल में --

यहाँ पे लोग आए हुए हैं।

जहाँ पे बोहोत सारे लोग आते है सेल्फी लेने ऐसे तरफ चोरो तरफ हरियाली ही हरियाली है।

मुझे लगता है ये एक पहाड़ी इलाका है। जहाँ पे पहाड़ी इलाका है। इसको देखने में बहोत खुबसूरत लग रहा है। इससे के बगल में सारा --

आप लोग देख सकते हैं मुझे लग रहा है कि यह एक बस है जो कि ब्लू कलर का है। ब्लूक और ब्लैक में यहां पे पर्दे भी लगे हुए हैं। बहोत अच्छी सुविधा भी उपलब्ध है।